यहाँ पर कुछ यह लॉन्ड्री का लग रहा है जिसमें काफी सारे कपबोर्ड्स हैं लॉन्ड्री की मशीन है पी औ पी की लाइट्स है।

ब्लू कलर की मल्टी है वो नज़र आ रहा है इस तरफ भी एक अ बोर्ड है रेड कलर का खिड़कियां भी --